दो तीन आदमी नीचे बैठे हुए है निचे बहुत सारी चेयर बिछा हुआ है बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ।

ये एक शॉपिंग मॉल है शॉपिंग मॉल में शॉपिंग मॉल के साइड्स में बोहोत सारी ग्रीन वेजीटेबलस रखे हुए हैं।

सामने एक सीढ़ी दिख रही है सीढ़ी के बगल में थोड़ा सा जगह है वहाँ पे बहुत सारे काठ के सामान रखे हुए हैं जैसे की काठ के गणेश --

ये एक पहाड़ी अंचल हैं अअअअ चारो तरफ़ पहाड़ भरे पड़े हैं घने जंगल दिख रहे हैं।

काम की हुई लटकन लटक रही है शोरूम के अंदर एक लड़की कोने में बैठकर काम कर रही है टेबल बिछी हुई हैं टेबल के ऊपर कुछ फाइल्स रखे हैं।

दोनो तरफ़ रास्ते के दोनो तरफ़ हरे -भरे पेड़ पौधे भडे है खुला आसमान बहुत ही सुन्दर दृश्य है।

सामने एक बहुत ही बड़ा समाला दिख रहा हैं जोकी बहुत मोटा हैं सफेद झूला भी लाल रंग का और आस पास बोडि मे भर--